यह एक कमरा हैजिसमें की अलमारी के ऊपर बहुत सारे डब्बा रखा गया हैं।

इस फोटो में एक बहुत ही साफ सुथरा घर को दिखाया गया है इसमें बहुत सारे पोस्टर लगे हुए हैं।

आसपास के क्षेत्र में पेड़ पौधे हैं आसमान साफ- सुथरा दिखाया गया है।

यहाँ बैठे लड़का और लड़की का ड्रेस दोनो का स्पेशल और अलग अलग है।

यह एक होटल है। होटल में एक पोस्टर लिखा हैजिसमें लिखा है डी_एस_पी सोडा और उसके जस्ट नीचे लिखा है काफिशॉप --

अभी कपड़े रैक में रखे गए हैं प्लस में बहुत सारे कपड़े प्लास्टिक में बंद है तो कुछ कार्टून में भी बंद किया गया है।

इसके जस्ट नीचे में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और छोटे छोटे चट्टान को भी दिखाया गया है।

पहाड़ी के जस्ट नीचे एक छोटा सा घर है जिस में दो व्यक्ति को दिखाया गया है एक व्यक्ति बैठा है तो एक व्यक्ति खड़ा है।

इस फोटो में एक पहाड़ी इलाका को दिखाया गया है जिस पर बहुत सारे व्यक्ति को दिखाया गया है।

बहुत सारे किताबें यहां रखी हुई हैं कुछ मोटा है तो कुछ पतला है।

इस सैलून के बाहर में बहुत सारे व्यक्ति खड़े हैं और आजू बाजू के क्षेत्र में बहुत सारे घर हैं।

सैलून बहुत ही अच्छे तरीके से साफ सुथरा रखा गया है।

अंदर में एक बल्ब भी जला हुआ है।

इस फोटो में एक पहाड़ी इलाका को दिखाया गया है जिसे बहुत बड़े बड़े चट्टान दिखाया गया है।

इसमें बहुत सारे टेबल भी रखे हुवे हैऔर आस पास के क्षेत्र में लाइटिंग बहुत अच्छा से किया गया है ऊपर पंखा लटका हुआ है।